मंदिर में पूजा हो रहा है।

शाम में क्लाउड दिख रहा है रोज यहाँ पे बहोत सारे लोग घूमने आती है।

दूर में बहोत बड़ा - बड़ा पेड़ दिखती है।

सामने एक बच्चा खड़ा है। बच्चा बहुत क्यूट है।

घर में एक एयर कूलर दिख रहा है।

यहाँ पे एक ऑफिस दिख रहा है ऑफिस बहोत बड़ा है।

सामने कुछ केन हैं कुछ सेंट सेनिटाइज़र हैं।

कुछ हैंडवाश भी है।

यहाँ पे एक नदी दिख रहा है न --

चर्च की दीवाल में एक छोटा सा जीसु क्रिस्ट की मूर्ति है।

इधर पे एक स्टेशन है स्टेशन बहोत बड़ा है।

एक चेयर है। दुकान के सामने में भी एक चेयर है।

रूम में बहुत सारी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है।

रूम में गानबजना हो रहा है।

पास में बोहोत सारे लैप पोस्ट दिख रहा हैं।

एक झूरी है उसमे छोटा-छोटा पेर है।

दूर में दो टैंक दिख रहा है। आस - पास में बहोत सारी पेड़ हैं।

इधर पे एक मस्जिद है मस्जिद बहोत बड़ा है।

इधर पे एक पहाड़ है। पहाड़ बहोत सुंदर है।

गुआ के सामने एक लड़का खड़ा हैं।

कुछ चेयर है दीआल की रैक में कुछ सामान है।

दीवाल में एक टीविया चल रहा है एक लोग टीविया देख रहा है।

दूर में भी कुछ पेड़ हैं।

पे एक अप्पार्टमेन्ट है।

उस टोब में कुछ प्लास्टिक की फ्लावर है।